यहाँ पर मुझे एक पार्क का गेट दिख रहा है। एक गेट पार्क के सामने एक रोड है। रोड के साथ में एक नाली बनी हुई है और ये नाली --

इस इमेज में मुझे राज हैमोपोथीक क्लिनिक दिख रही है जो डॉक्टर एम.एस.के. हैं।

दिवार के ऊपर एक ब्लैक कलर का गे गेट लिखा हैं। गेट के ऊपर गेट नंबर टू लिखा हुआ हैं। उसके अंदर कुछ भवन सा बना हुआ है।

उस घर के पीछे कुछ पेड़ हैं। उसके पीछे भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और सामने कुछ लोहे की रड या दिखाई दे रही हैं।

कॉलेज पूरा खाली है उसका बहुत बड़ा ग्राउन्ड दिख रहा है और ब्लैक कलर का गेट है उस कॉलेज --

इस इमेज में एक बाइक दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की उस बाइक के आगे एक और बाइक है।

इस बिल्डिंग के सामने दो कारें खड़ी हैं। एक स्कॉर्पियो कार है और एक स्विफ्ट कार है उसके उसके नीचे एक बंदा चल रहा है और ऊपर भी कुछ बिल्डिंग और --